यह हौंडा का शोरूम है जहाँ हौंडा की गाड़ियाँ --

बहोत बड़ी दुकान नज़र आ रही है जिसमे हर प्रकार का सामान किराना--

यह एक स्कूल प्रतीत हो रहा है जिसके बाहर एक कार गाड़ी खड़ी हुई हैं।

ये एक हॉस्पिटल है जिसमे बहोत सारे पलंग लगे हुए है और पते--